यह एक मकान दिखाई दे रहा है जिसमें दीवारों पर क्रीम क कलर किया हुआ है और उसके बरामदे में एक वाइट कलर की गाड़ी खड़ी है.

ये एक बहुत बड़ा पार्क दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत हरियाली है और दूर एक कोने में--

ये एक बहुत बड़ी गिफ्ट शॉप है जिसके दरवाजे पर कांच के शीशे लगे हैं.

और अंदर काले रंग के सोफे लगे हैं और बीच में एक कांच की टेबल है बहुत बड़ी--

दो दुकान बंद है और एक खुली हुई है वो स्टेश वो खाने पीने की दुकान है.

और उसके बाहर एक आदमी खड़ा है जिसने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई है.

ये एक मोबाइल की दुकान है जिसमें कोने में कांच की टेबल है और तरह-तरह के मोबाइल के डब्बे रखे हुए हैं.

ब बहोत बड़ी ब्राउन कलर की टेबल लगी है जिस पे लाइन से बच्चे बैठे हैं जिन्होंने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई है और वो पढ़ाई कर रहे हैं।

ये एक बहुत बड़ा लौंच है जिसमें बहुत सारे कमरे दिखाई दे रहे हैं जिनपे ऑरेंज कलर का पेंट किया हुआ है.

और एक छोटा ही साइकिल पे एक बच्चा बैठा हुआ है बीच बीचोंबीच और एक रिसेप्शन है कोने में--

रिसेप्शन पे वाइट कलर की अ वाइट कलर का डेक्स है जिसमें दो किताबें रखी है और उस रिसेप्शन पे एक लड़की खड़ी हुई है.

ये एक क्रॉकरी शॉप है जिसमें तरह तरह की क्रॉकरी है बाउल है कलरफुल बहुत सारे डिनर सेट हैं तरह तरह की आइटम हैं छोटी बड़ी हर तरह की।

और रंगबिरंगे कलर है पिंक रेड वाइट येलो --

और उन टेबल में कुर्सी पर एक लेडीज बैठी हुई है जो फोन पर बात कर रही है उसके आगे कांच के गिलास रखे हैं और पर्स रखा है.

इस पे काफी लोग वॉक कर रहे हैं बड़े-बड़े पेड़ बने हुए हैं बहुत अच्छा वातावरण है बहुत ज्यादा हरियाली है.

ये एक स्कूल हॉल की फोटो है जिसके अंदर काफी सारे बच्चे खड़े हैं और सामने एक बच्चे की फोटो लगी है सब बच्चों ने वाइट टीशर्ट पहनी है।

यह एक ऑफिस है जिसमें सामने दीवार पर बाबा अंबेडकर की फोटो लगी है और एक बेंच के दोनों तरफ कुर्सियां है जिस पर कुछ आदि बैठे हैं.

ये स्टेडियम का सीन है जिसमें कुछ लड़कियां नृत्य कर रही हैं जिन्होंने कलरफुल पोशाक पहनी है ऑरेंज ग्रीन ब्लू और उन्होंने--

ये एक सुंदर सा पारक है जिसमें झूले लगे हुए हैं और बीच में एक बहुत फैंसी --

वो फाउंटेन लगा हुआ है और बीच में एक बच्चा भी खेल रहा है.

और अंदर लाइटें लगी हुई है और कुछ काफी सामान रखा हुआ है.

ये एक मंदिर है जिसके आसपास पिलर खड़े हैं और नीचे कलरफुल कार्पेट बिचे हुए हैं और--

यहां लाइन से बहुत सारे ट्रक खड़े हैं जिनके ऊपर सामान लोड किया हुआ है कलर फ्रूट ट्रक है.

यह एक सुंदर सा पार्क दिखाई दे रहा है जिसके आसपास छोटे-छोटे पेड़ बने हुए हैं और बीच में आने जाने के लिए--

जगह बनी हुई है और सामने एक शर्ट नजर आ रहा है.

अ दो चेयर भी रखी हैं और ऊपर कुछ फोटो लगी हुई है.

मकान बनाने का काम चल रहा है तो एक पिलर पे वर्कर चढ़े हुए हैं.

एक शॉप है जिसका नाम है वीवो ओमनी इलेक्ट्रो वर्ल्ड और इस शॉप के बाहर कुछ सामान भी रखा है.

और सामने भी एक शेल्फ खड़ा है ग्रीन कलर का जिसमें काफी अच्छी-अच्छी चीजें होंगी--

यह कृष्ण भगवान का मंदिर है जिसके आसपास पिलर खड़े हैं और ऊपर एक शेड लगा हुआ है।

और इसके आगे एक ब्लू कलर का पिलर खड़ा है.

ये एक स्कूल का सीन है इसकी ऊपर की छत पिंक कलर की है कलरफुल और इसके साइड में--

ये जन्माष्टमी महोत्सव का सीन है जिसमें एक लेडीज --

ये एक हॉस्पिटल का सीन हैगा और इसमें काफी सारी कुर्सियां लगी हुई है सामने ब्राउन कलर के गेट हैं.

ये एक होटल हैगा जिसके बाहर दो स्कूटर खड़े हैं और बाहर--

एक सुपर मार्केट जहां पर सभी तरह की चीज हैं यहां पर एक जैकेट टंकी है कलरफुल जिसमें--

ब्लू और रेड कलर दिखाई दे रहा है और कुछ कपड़े एंगल पर भी लगे हैं.

और पंडाल के बाहर भी दो कुर्सियां लगी हुई है वाइट कलर की और उसके बाहर भी लोग खड़े हैं।

यह गिफ्ट शॉप है यहां पर बहुत सारी डॉल है तरह-तरह की--

यहां पर एक लड़की घर में योगा सिखा रही है इसमें--

ये एक होटल का सीन है जिसमें सामने मेनू कार्ड लगा हुआ है और नीचे बड़ी सी टेबल है खाना खाने के लिए और ब्लैक कलर की बेंच बने हुए हैं जिस बैठने के लिए--

उस बर्ड्स की पिक बनी हुई है.

यह कपड़े का शोरूम है यह एक रूम है इसके अंदर बहुत सारे हेंगर भी कपड़े टंगे हैं सामने एक मिरर लगा है।

और उसके आगे कोई शो पीस में दो पुतले खड़े हैं जिन्होंने कलरफुल कपड़े पहने हैं।

ये कृष्ण भगवान का मंदिर है जिसमें ऑरेंज ग्रीन और वाइट कलर के बैलून लगे हैं सामने पुजारी बैठा है जिसने--

और ऊपर वाइट कलर की शर्ट पहनी है डार्क ब्लू वाइट और उसी के साथ एक ब्लैंकेट और एक आदमी बैठा है।

चटपटी गोलियां भी हैं डेली यूज की काफी सारी आइटम है इसमें--

तेल साबुन कंगा शैंपू तेल--

रंग पिलंगी झालर से सजा रखा है और उसके साथ ही कुछ लोग बैठे हैं जो चाट पकौड़ी खा रहे हैं सामने बहुत अच्छे कलरफुल दृश्य दिखाई दे रहा है.

यह बहुत पुराने एक मंदिर दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे पिलर खड़े हैं ऊपर फैन भी लिखे लगे हुए हैं.

ये एक रेस्टोरेंट है कलरफुल रेस्टोरेंट है बहुत सारी लाइटें हैं इसमें--

सामने एक लड़का खरा है जिसने रेड कलर की शर्ट पहनी है और उसम ब्लैक कलर से कुछ लिखा है।